यहाँ पर बाहर एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है गेट के पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है बाहर दो बोर्ड लगे हुए है एक बोर्ड आसमानी कलर का है एक बोर्ड पीले कलर का है।

एक यहाँ पर चेयर रखी हुई है जो कि रेड कलर की है और यहाँ पर दो ढोलक भी हमको रखी हुई दिखाई दे रही है।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

चट्टान के बीच में भी यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं बादल चार पाँच कलर का हमको दिखाई दे रहा है।

हमको बहुत शारी गिटारे दिखाई दे रही हैं दो गिटार यहाँ पर रखी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर दो ढोलक भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमको एक कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है आइट साइड पर यहाँ पर डिक्की रखी हुई हमको दिखाई दे रही है ऊपर यहाँ पर लाइट भी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

पर हमको दो डी_जे रखे दिखाई दे रहे हैं जिनपर गेंदे के फूल की एक माला डली हुई है बीच में एक कंप्यूटर --